और यहां एल_ई_डी लाइट भी लगी हुई है और यहां कोने में कुछ रखा हुआ है।

इस चित्र में कुछ दुकानें दिखाई दे रही हैं जहां लाइट्स भी दिखाई दे रही हैं।

यह एक मोबाइल शॉप का चित्र है जहां सामने एक टेबल दिखाई दे रही है।

हां ऊपर की तरफ से भी कुछ चित्र बनाए हुए हैं और एक दिया जल रहा है।

जो की एंगल से बनाया हुआ है और नदी के उस पर बहोत से पेड़ दिखाई दे रहे --

यह एक ट्रैक्टर का शोरुम दिखाई दे रहा है जहां चार ट्रैक्टर रखे हुए हैं।

यहां बहुत से लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं दुकान के बाहर कुछ बोरिया रखे हुए है जिनमें कुछ भरा हुआ है।

और नीचे पानी जा रहा है और पानी के अंदर दो लोग खड़े हुए हैं जिनमें एक लड़का है और एक बड़ा आदमी है।

जिसने लाल रंग का टी शर्ट और व्हाइट रंग का पैंट पहना हुआ है और यहां दीवार पे कुछ पौधे जैसा दिख रहा है।

और कुछ लोग दिखाई दे रहे है और बिजली का बड़ा सा खंबा भी दिखाई दे रहा है।

और सामने बहुत सा पानी दिखाई दे रहा है और बहुत से पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं।

और यहां सामने थैली में ओ एक बिसलेरी पानी की बोतल रखी हुई है।

और यहां दो बिसलेरी पानी की बॉटल रखी हुई है और यहां पे कुछ कप रखे हुए हैं।

और यहां पे स्टीकर भी रखे हुए हैं और यहां पे फेविक्विक भी रखा हुआ --

यह एक दुकान का चित्र है यहां बहोत सारे बिस्किट रखी हुइ हैं।

और लाइट भी लगे हुए है उनमें से एक आदमी के पास बैग दिखाई दे रहा है।

यह एक बीच का चित्र है यहां सामने बहुत से पत्थर दिखाई दे रहे हैं और यहां बहुत सारा पानी भी दिख रहा है।

और वहाँ एक बास्केट भी रखा हुआ हैं और दीवार पे दो कागज लगाए हुए हैं।

इस चित्र में बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है जो की पीला व्हाइट और कत्थई रंग से रंगा हुआ है।

यह एक कुकर की दुकान है यहां पे बहोत से कुकर रखे हुए हैं जिनमें से कुछ कुकर स्टील के रखे हुए हैं।

और यहां दीवार पे एक मीटर लगा हुआ है और यहां शटर खुला हुआ है जहां एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

मंदिर के पीछे कुछ सुख और कुछ हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं और यहां कुछ राख गिरी हुई है।

सामने के मकान पे बोर्ड लगा हुआ है। जिस पे श्री अष्टविनायक लॉटरी सेंटर लिखा हुआ है।

यहां सामने एक गड्ढा दिखाई दे रहा है जिसके अंदर बहुत सी ईंटें दिखाई दे रही है।

इस चित्र में सामने बहुत से कवर दिखाई दे रहे है जो कि अलग अलग रंग के है जिनमें पिला ब्ल्यू और व्हाईट रंग के कवर है जिनमें कुछ भरा हुआ --